यह एक समुद्र है जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है और एक लकड़ी की नाव है जो की नीले कलर की है और उसके ऊपर बहुत सारे आदमी --

यह एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर अलमारी के अंदर बहोत सारे बुक्स पड़ी हैं और दीवार पर --

है यह प्रोविजन बिजली के बिल भी भरे जाते है और इनके बाद तीन आदमी खड़े हैं और दो आदमी अंदर हैं जो की बातचीत लगे हुए हैं।

यह एक किया मोटर्स का स्टोर है जिसके अंदर बहुत सारे गाड़ियां खड़ी हैं आधी ब्लैक है और आधी व्हाइट है।

यह एक कंप्यूटर क्लास है जिसके अंदर बहुत से बच्चे बैठे हैं स्टूल पर और कंप्यूटर चल रहे हैं कंप्यूटर में कुछ ड्राइंग वगैरा बना रहे और इसमें एक --

यह एक बहुत बड़ी हवेली है जिसके बाहर कुछ आदमी खड़े हैं और गेट खुला है एक गेट बंद है और इसके --

और इनके बीच में कुछ पोल्स भी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर आसमान पूरा व्हाइट हो रखा है जो कि बहुत --

रंग बिरंगी लाइटिंग भी जग रही है और ऊपर आसमान में अंधेरा हो रखा है जो की रात का समय है।

यह एक शॉप है जिसके अंदर लोग बैठे हैं और एक ए_सी लगी हुई है और एक एक्जास्ट फैन है।

यह स्पेयर्स पार्ट्स की दुकान है इसके अंदर वाइपो के वाल्स वगैरा मिलते है जोकी --

यह एक हैंड वेयर शॉप है जिसके अंदर बहुत से वॉश बेसिन पड़े हैं और --

आधा व्हाइट है और आधा रेड है ऊपर आसमान नीला हो रखा है और एक व्यक्ति बाहर जा रहा है और--

के बिल्डिंग के पास एक खंभा है खंभे के पास एक वृक्ष दिखाई दे रहा है जोकि सूखा हुआ वृक्ष है।

पानी मे पौड़ी भी लगी हुई है और नीले कलर के शर्ट वगेरह फिसल पट्टी बनी हुई है और आस पास मे वृक्ष --

वृक्ष भी है जो की बहुत बड़ा वृक्ष है जो की हरियाली झलका रहा है और इस खिड़की में --

एक झंडा दिखाई दे रहा है और यह दो तीन मंजिले भी है ये पत्थर से बना हुआ है ये जिला कलेक्टर का ऑफिस भी है।

बहुत सारे हरियाली धूप वगैरा भी लगी हुई है नीचे धरती सुनी सुनी दिखाई दे रही है और खाली बेस में रंग --

यह एक सैलून है जिसके अंदर कटिंग की जाती है और यहां पर एक कुर्सी और एक --

और पीछे नीले कलर की चद्दर लगी हुई है और नीच पीछे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जो की --

यहां बहुत सारे गोल गोल ड्रम्स पड़े हैं जो की पेंटिंग के बीच में काम आते हैं।

और आसपास में बहुत सारे वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं इस स्विमिंग पूल में बहोत पानी भरा हुआ है जो की साफ सुथरा है।

वेह शीशे के सामने बैठा है और पिक क्लिक कर रहा है फोन की फ़्लैश ऑन है और इसके कान और --